यहां पर बहोत ही अच्छे बेडरूम बना हुआ है यहां पर एक कुर्सी डली हुई है यहां पर लाइट लगी हुई है यहां पर बहोत ही अच्छा बिस्तर यहां पे बहोत सारे तकिया भी लगे हुए दिखाई दे रहै है यहां पर सफेद कलर का बिस्तर--

ककड़ी मूली लौकी गाजर शकले भटे यहां पर टमाटर भी रखे हुए है यहां पर मि--